जिसमें दो दो रिंग दूसरी साइड है दो रिंग राइट साइड है।

थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी और नीचे घाँस से हैं काफी--

एक रेड कलर की बिल्डिंग है उसके आगे काफी बड़ा पार्क है जिस--

तीनों साइड कुछ बना हुआ हैकाफी बड़ा-बड़ा--

सामने एक स्टॉल है जो की थ्रेडस लिखा हुआ है उसके ऊपर--

एक छोटी है स्काई ब्लू वाली और ब्लैक वाली बड़ी है।

उसके पीछे काफी बड़ी बिल्डिंग है एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है ।

और ऊपर एक किसी अन्य भाषा में लिखा हुआ है उ